इस दृश्य में मैं देख पा रही हूं--

जहां पे लोग अगर धूप है तो बैठ सकते हैं।

को यहां पर लगाया गया है जिसकी सहायता से लोग उस पर चढ़ सकते हैं।

एक महिला और और एक छोटा बच्चा खड़ा है।

प्ले एरिया है जहां पे एक झूला बना है।

पेड़ पौधे हैं आसपास कुछ दुकानें बनी हुई हैं।

कि यहां पे एक बिल्डिंग या फिर घर बना हुआ है।

मैं देख पा रही हूं कि यह सीन किसी समुद्र किनारे का है।

और जो मकान हैं वो अभी भी बन रहा हैं।

के आसपास खूब ज्यादा हरियाली है और खूब सारे लोग यहां पे--

और बाजू में एक खंबा दिया है एक रास्ता है।

बोर्ड पर इंग्लिश और गुजराती में--

गुजरात जंगल और संशोधन--

पीछे किचन के पास दो खिड़कियां भी लगी हुई हैं।

यहां पे अलग अलग टेबल बने हुए हैं।

पेड़ है एक बिल्डिंग है।

इसमें कुछ लोखन के सरिए--

जिसपे तीन लोग सवारी कर रहे हैं।

जैसा कि मैं एक सीन में देख पा रही हूं।

पूरी रात पटाखों की रोशनी से जगमगा रही है।

जहां पर कुछ लोग खड़े हैं।

यह एक मंदिर के पीछे का सीन है।

यहां पर ब्लू कलर के दो गेट हैं।

जैसा कि मैं इस सीन में देख पा रही हूं।